विशाका डायरी मे गुलक सी क्रीम मिल्कशेक इत्यादि मिलता है।

कुछ लोग खड़े हुए जाते है इसमे चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और पहाड़ नजर रहा है पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए है।

यह नदी है सामने की तरफ़ एक बड़ीसी नदी नज़र आ रही है सामने की तरफ पानी भरा हुआ है पानी मे एक नाव है जिसमे दो व्यक्ति एक महिला ये चप्पू चला--

एक समारोह का कार्यक्रम हैं सामने कि तरफ एक व्यक्ति ढोलक लिये हुए बेठा हुआ है।

एक व्यक्ति वह पर खड़ा हुआ है सामने तरफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आधार लिखा हुआ है आधार एनरोलमेंट अपडेट सेंटर लिखा हुआ है पीछे की तरफ बहुत सारा ऑफिस --